इधर इस साइड में हम लोग एक रास्ता भी देख रहे हैं जो स्कूल के बगल में होते हुए जाता है।

गुजरातियों की डांस होती है यहां पे ऐसी डांस है ये।

यहां पे हम लोग एक रेस्टोरेंट को देख सकते हैं और उस रेस्टोरेंट के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।

दुकान में बहोत सारे कुरकुरे की पैकेट लेज और फिर ब्रश टूथपेस्ट सब लोग यहां पे

पे बैठने के लिए स्टूल्स है और पीछे लाइट्स है।

इस बिल्डिंग के नीचे बहोत सारी गाड़ियां हैं।

अ उस साइड से भी हम लोग एक टी_वी देख सकते हैं।

वहां पे दूल्हा और दुल्हन बैठे हुए हैं स्टेज पे और कुछ लोग नीचे चेयर पे बैठे हुए है और कुछ लोग कुछ एनाउंस कर रहे है।